और रेड कलर का और छड़ वड़ भी रखा हुआ है देख सकते हैं उधर एक--

तो भाई लोग देख सकते हैं ये एक अस्कूल है यहाँ पर तीन बस लगे हुए हैं।

स्कूल में कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है देख सकते हैं बहुत बड़ा स्कूल है ये --

देखिए यहाँ बहुत भीड़ है देख सकते हैं यहाँ पर सामने में गाड़ी भी खड़ा है।

तो भाई लोग देख सकते हैं ये वासिंग सेंटर है जहाँ पर गाड़ी साफ होता है देख सकते हैं अभी एक होंडा का गाड़ी है।

तो भाई लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक मूर्ति है।

अंकल जी हैं बहुत अच्छा एफ ट्वेंटी फाइव बाइक का नाम है उसमें बैठे हुए हैं --

टाइप का बना के रखे हैं ये शायद यही ये बेचते हैं।

विशाल मेगा मार्ट नाम है साइंस --

भी यहाँ पर जाकर के शॉपिंग कर सकते हैं देख सकते हैं अंदर में बहुत सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं।

इंटरेंस एग्जाम बोर्ड रिजल्ट भी में--